और यहां पर वाइट कलर की लाइटिंग भी है और डीजल और पेट्रोल दोनों--

बाहर कांच का बैकग्राउंड है हरे भरे पेड़ पौधे भी है।

कुछ हरे-भरे पेड़ लगे हुए हैं और साइड में बहोत सारे गुलदस्ते रखे हुए हैं बहोत ही प्यारे गुलदस्ते हैं रेड कलर के फूल भी है वाइट कलर के येलो कलर के बहोत ही प्यारे --

जैसे की आपलोग देख सकते हैं यह एक मॉल है और इस मॉल में पीछे लिफ्ट वाली सीढ़ियां लगी हुई है। और यहां पर एक कार भी है।

जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर एक मॉल टाइप और यहां पर बहोत ही सारी टी-शर्ट वगैरा जॅकेट रखी हुई है।

जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर एक प्लेट है जिसमें बहोत ही--

पीछे एक प्लेट भी है जिसमें चम्मच के द्वारा कुछ रखा है।

पीछे बहोत सारे हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं। खंबे भी दिख रहे हैं कुछ और--

देखकर लगता है कि यह ग्राज है और यहाँ पर पीछे कुछ हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं।